पेड़ पोधै भी काफी सारे हैं ऑटो का भी प्रतीति हो रहा है आसमान काफी साफ है कुछ रंग के बादल दिख रहे --

बहुत ही प्यारा और खूबसूरत नजारा प्रतीत हो रहा है नीचे भी मार्बल वगैरह फर्श बहुत ही अच्छा और शानदार है।

कुछ पेड़ पोधै भी दिखाई दे रहे है ऊपर की और आसमान भी काफी साफ सुथरा है फोटो काफी अच्छा और सामने से लिया गया है।

यहां नीचे भी जगह वगैरह काफी साफ सुथरी है आसमान भी काफी सादा सूरज की रोशनी सीधी --

इस फोटो में मेट्रो करके नाम लिखा प्रतीत होता है अंदर की ओर लाइटे लगाई गई हैं।

और भी आसमान काफी घिरा और साफ दिखाई दे रहा नीचे काफी सारी बाइक वगैरा है क्योंकि कभी कुछ इधर और कुछ उधर और कुछ बीच में है और बोडो --

इस फोटो मे कुछ हरियाली दिखाई दे रही है जो की पब्लिक पार्क का फोटो है नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है आस पास काफी --

लगे हुए दिखाई देते हैं आसमान भी काफी साफ सुथरा और खूबसूरत लग रहा है फोटो को देखने से ऐसा लग रहा है कि आस पास में गराज वगैरा --

गैरेज वगैरा भी है जोकि गाड़ी के साफ सफाई और धोने के लिए काम में लिया जाने वाला उपयोग में लिया जाता मोबाइल नंबर भी दिए हुए --

उसको बनाया गया है और कुछ लाइटनिंग और खिड़कियां वगैरह दिखाई देती प्रतीत हो रही है आसपास बाइक्स वगैराह भी नीचे खड़ी हुई है।